खेतो में खेती की गई है।

ये एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में गोविन्द भारतीय शिक्षा सेवा सदन है यहाँ पे पे लोगो की सेवा की जाती है बहोत सारे लोगो की भीड़ लगी हुई है बहोत सारे लोग यहाँ पे आये है।

और चर्च में ईसाई लोगो को की शादी भी होती है मोमबती जला के वहाँ पे प्रार्थना--

पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल भराने के लिए बहुत सारे लोग बाइक लेके कार लेके गाड़ियाँ लेके आते है ।

शादी समारोह चल रही है यहाँ बहोत बड़े पंडाल बनाये गए है पंडाल में एक स्टेज बनाया गया है।

मैदान है यह मैदान में लड़के क्रिकेट खेलने के लिए आते है यहाँ पे बहोत सारे बाइक खड़ी है एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है और यहा से दूर-दूर तक बहोत सारे घर दिखाई दे रहे है।